जिनका गेट है पानी का कैम्पर है एक मशीन धरी हैं बाहर--

कुंडे से लगे हुए हैं बहुत सारे आदमी स्टेशन है पे बहुत सारा पहाड़ी इलाका यहां पे छोटी छोटी घासे हैं।

यहां पे एक बस और खुला एरिया है यहां पे एक ट्रक है झाड़ियां हैं रेत है साइड में एक कंपनी है जिसके बाहर बहुत सारे--

ट्रक है सूर्य का प्रकाश है खुला आसमान है।

और यहां पे बहोत सारी बुक्स मतलब रखी हुई हैं।

दिया है बहोत सारे आदमी बैठे हैं एक टाइम --

यह एक कमरा है जिसमें बहुत सारी पेंट की बाल्टिया हैं।

एक ए_सी रख रखी है फोटे है बच्चे का हाथ में पेन है कापियां है।

और यहां पे और इससे बड़े बड़े कुछ और समान है यहा प तस्वीर है पैकिंग म कुछ है।

और इसमें और भी इंग्लिश में कॉन्टैक्ट योर ब्लीडिंग डिजाइन इंटरनेशनल पता नहीं क्या लिख रखा है किसी का अच्छा फोन नंबर वहां पर कुछ--

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे है बहोत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जिनपे छतरियां लग रही हैं।

यह एक बस स्टैंड हैं जहां पे एक बस है गुलाबी और सफेद रंग की यहां पे बहुत सारे आदमी है।

पीछे चार दिवारी के पीछे फूल हैं और चार दिवारी के भीतर भी बहोत सारे--